समुन्द्र है और बगल में पहाड़ है।

फैक्ट्री है फैक्ट्री मतलब गाड़ी का शोरूम है जिसमे बहुत सारा अ-गाड़ी रखा हुआ है या तो मोटर साइकिल बहुत सब कंपनी का बाइक मिलता है ।